मुझे इस तस्वीर में दो और तस्वीर लगी दिखाई दे रही हैं दीवार में बाजुमें एक दरवाजा भी नजर आ रहा हैं निचे टाइल्स भी लगा हैं रंगबिरंगा ऊपर दो लाइट भी जल रहा हैं।

झरना मे पानी बहुत हुआ आ रहा है सामने एक छोटा सा पीला पत्थर भी है। जिससे पानी बहते हुए नीचे आ रहा है और बहुत बड़ा भी है।

एक अलमारी लगा हुआ हैं वहाँ पे एक आइना भी दिख रहा हैं निचे बालटी भी है और टीवी भी लगा हुआ है।

इसमें चूड़ियाँ भी दिख रहे हैं। इस में लाइट भी दिख रहे हैं। कुछ सामान भी है जो बच्चो के खेलने के काम आता है। इसमे बनी--

सामने एक बड़ा पीला बिल्डिंग नजर आ रहा हैं। जिसके निचे कुछ फूल से सजे भी हुए हैं। ऊपर कुछ लकीले बना भी हुआ हैं जिसमे बहुत सारी खिड़की लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में सामने बहुत बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही हैं। जिसमे बहुत सारे खिड़किया बना हुआ हैं। इसमें बहार एक दीवार भी बना हुआ हैं। उसमें कुछ काले काले लोहे पट्टी बानी हुई हैं।